कलरफुल दिवार का पेंट है और सामने में रैक बने हुए हैं जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है एक महिला बैठी है जिसके साइड में बहुत सारे बैग रखे हुए हैं।

ये दो लड़के है जिसने एक ब्लै रेड कलर का बैग टांगा हुआ है ब्लैक कलर का टी-शर्ट पेहना हुआ है।

सूरजअ ढलता हुआ दिख रहा है।

और दीवाल पे कुछ थैली टंगी हुई है पीछे खिड़की दिख रही है।